ये नर्सरी का पिक्चर है ये टमाटर का पोधा है जिसमें से बहुत सारे टमाटर भी निकल रहे हैं हाँ ये नर्सरी के पिक्चर ऊपर से पानी आ रहा है नर्सरी के टमाटर का पिक्चर टमाटर के पौधे का पिक्चर --